बकरी का बच्चा सफेद और ब्लैक कलर का दिख रहा है।

पीछे की तरफ मुझे कुछ बकरियां और दिखाई दे रही है।

इस पिक्चर में मुझे एक घर दिखाई दे रहा है।

खिड़कियां भी दिख रही हैं बाहर की साइड मुझे पेड़ और पौधे दिखाई दे रहे हैं।

जिसमें पर्दे टंगे हुए दिख रहे हैं पर्दों का कलर सफेद है।

जिस पर चर्च का सिंबल बना हुआ है स्टेचू पत्थर का बना हुआ है।

जो कि लोहे की रेलिंग से बनाई गई है पीछे की तरफ मुझे नारियल के पेड़ और कुछ पौधे दिख रहे है।

गाड़ी इस में येल्लो कलर की दिखायी दे रही है जीसके पहिये ब्लॅक कलर के दिख रहे है।

ऑटो रिक्शा आगे मुझे एक गेट दिखाई दे रहा है पीछे की तरफ कुछ घर दिखाई दे रहे हैं।

जो की सफेद कलर के है इसमें मुझे अ कुछ पेड भी दिख रहे है।

गेट के ऊपर दीवार दिख रही है जो कि ऑरेंज और येलो कलर की है।

किलो वॉट रखे हुए हैं आसपास मुझे काफी सारी क्रेट दिखाई दे रही हैं।

फिसल पट्टी पर एक लड़का खड़ा हुआ है जिसमे वाइट कलर का कपड़ा बंधा --

आ इसमे मुझे सिडीया भी दिखायी दे रही है इसी में नदी दिखयी दे रही है आस पास मुझे पेड दिखायी दे रहा ही जो कि ग्रीन कलर के है।

आ साइड मुझे मिट्टी दिखयी दे रही है मिट्टी का कलर ब्राउन दिख रहा है सामने के तरफ पेड दिखयी दे रहे है।

इस पिक्चर में मुझे एक रेलवे स्टेशन दिखाई दे रहा है इसमें मुझे एक ट्रेन दिखाई दे रही है।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

इस पिक्चर में मुझे एक स्टैशनरी दिखाई दे रही है।

जिसमें काफी सारी बुक्स और किताबें पड़ी हुई है।

इस पिक्चर में मुझे एक दूध डेरी दिखाई दे रही है दूध डेरी का नाम बिशाखा डेरी पार्लर है।

लेयर चॉकलेटी कलर की दिख रही है।

नीचे की तरफ एक दो सीढ़ियां दिखाई दे रही है साइड में ही मुझे डस्टरबिन दिख रहा है।

अ ऊपर के तरफ एक पैनल लगा हुआ है जिसपर हैलतींग --

मेडिकल स्टोर लिखा हुआ है नीचे की तरफ मुझे कांच का गे --

जो कि सफेद कलर की है।

उसमें फ्लावर डाले हुए हैं फ्लावर का कलर वाइट कलर का है।

इसमें मुझे एक झंडा भी दिख रहा है जो कि ऑरेंज कलर का है।

इसमें छोटी-छोटी घास दिख रही है जो कि ग्रीन कलर की है।

इस पिक्चर में मुझे एक बस स्टैंड दिखाई दे रहा है।

बीच में मुझे बस खड़ी हुई दिख रही है बस का कलर --

इस पिक्चर में मुझे एक मैदान दिखाई दे रहा है मैदान मुझे ब्राउन कलर का दिखाई दे रहा है।

एक लड़के ने वाइट कलर का शर्ट पहना हुआ है।

पीछे की तरफ मुझे पेड़ दिखाई दे रहे हैं जो कि ग्रीन कलर के हैं।

इस पिक्चर में मुझे एक घर दिखाई दे रहा है जो कि दो मंजिला का बना हुआ है।

यहा ब्लैक कलर के गॉगल्स पड़े हुए दिख रहे है और इसमें मुझे बैठने की चेयर्स ब्लैक दिख रही है।

ऊपर मुझे ईंटे पड़ी हुई दिखाई दे रही है कुछ लोहे के सलिए भी दिख रहे हैं।

आगे मुझे सड़क दिखाई दे रही है।

जो कि सफेद कलर के हैं बिल्डिंग का कलर मुझे --

इसमें डेकोरेशन किया गया है बालून के द्वारा।

इसमें एक लड़के ने पिंक कलर की बोतल टांगी हुई है।

इस पिक्चर में मुझे गमले दिखाई दे रहे हैं जिनमें पौधे लगे हुए हैं --